इस दृश्य में मुझे बहोत सारे लोग दिखाएं दे रहे हैं।

यहां सामने मुझे कुछ गिटार दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में मैं एक बड़ा सा खेत का मैदान देख पा रही हूँ।

नीचे मै एक कार्टून का डिब्बा देख पा रही हूं।

एक दूल्हे की गाड़ी देख पा रही हूं।

पीछे की तरफ मैं एक बॉक्स देख पा रही हूं।

जोकि ऊंचे पहाड़ों से गिरती हुई--

इसके ऊपर एक बड़ा सा पुल मैं देख पा रही हूं पुल के ऊपर रेलिंग बनी हुई है।

यहां पे नीचे एक बालू झाड़ने वाला झरना दिखाई दे रहा है।

जहां पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे काल भैरव धाबा लिखा गया है।